एक आदमी यहाँ पर चल के जा रहा है ऊपर नीला आसमान है और साइड मे कुछ पेड़ दिखाई दे रहे है।

और साइड में कुछ सूखे घास के ढेर रखे हुए है।

यहाँ पर एक बिल्डिंग बना हुआ है जिसपे सुकमा लिखा हुआ है।

उसके छत के ऊपर कुछ लोग खड़े है एक पानी की टंकी दिखाई दे रही है सामने एक बड़ा-सा स्टेज बना है जिसके ऊपर कुछ लोग खड़े है। --